एक टेंट है लगा हुआ है दो आदमी खड़े हुए हैं।

बलून है जिसमें पेड़ लगे हुए है और पूरा धुन्धला दिखाई दे रहा है।

एक घंटी है एक मंदिर है जिसमे चार लोग एक सी ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहे है और हाथ में मोबाइल लिए हुए है।

एक कंपनी है कंपनी में का कंपनी में काफी सारे लोग खड़े हुवे दिखाए दे रहे है एक वयक्ति उनको सिखाता हुवा दिखाई दे रहा है।

एक बैठा हुआ है और व्यक्ति बैठा हुआ है एक व्यक्ति ओढ़े हुए है मछलियों को देखते हुए दिखाई दे रहा है।

नीचे ईटे दिखाई दे रही है ऊपर बाउंड्री दिखाई दे रही है बाउंड्री कच्ची दिखाई दे रही है। इसको लोहा को एक व्यक्ति पकडे--

एक ए_टी_एम है जिसके एक पिलर लगे हुए हैंजिसमें काफी सारे लोग एक जाली दिखाई दे रही है तार दिखाई दे रहे हैं एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

जो पौधे लगे बगल में पौधे दिखाए दे रहे है एक लड़का अपनी सेल्फी लेते हुवे दिखाए दे रहा है हेडफोन लगाया है सेवटर पहनी जेट --

जिसमें काफी सारी मछली राखी हुई है बहुत छोटी छोटी सी मछलिया है और कुछ बड़ी मछलिया भी राखी हुई।